बिस्तर के सामने में कुर्सी और टेबल भी रखा हुआ है।

बाइक के सामने एक येलो कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है।

टेबल पर चक नमक का डब्बा रखा हुआ है।

हमको ये पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

सामने में बहोत सारा कुर्सियां और टेबल लगा हुआ है।

सामने में एक इलेक्ट्रिक पोस भी लगा हुआ है और स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है।

मुझे ये पिक्चर में बहुत सारा टायर्स रखा हुआ दिख रहा है।

और मुझे बहोत सारा मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

दूल्हा और दुल्हन के सामने में दो स्टील का गमला रखा हुआ है।

हमको ये तस्वीर में कपरा का दुकान दिखाई दे रहा।

सामने में शिशा भी लगा हुआ है।

हमको ये पिक्चर में ब्लू कलर का दीवार दिखाई दे रहा है।

मुझे ये तस्वीर में बिल्डिंग के अंदर--

उसके हाथ पर घड़ी भी पहना हुआ है।

सामने में एक आदमी भी खडा हैं।

ऊपर में पंखा और ट्यूबलाइट भी लगा हुआ है।

मुझे ये पिक्चर में बहोत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान में बादल भी छाया हुआ है।

पीछे जमीन पर छोटे छोटे पत्थर भी बिखरा पड़ा हुआ है।

सामने में एक बड़ा सा बिल्डिंग भी बना हुआ है।

सामने में गाड़ी और बाइक भी रखा हुआ है।

और खिड़की में पर्दा भी टंगा हुआ है।

मुझे ये तस्वीर में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और यह पिक्चर में बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में सड़क दिखाई दे रहा है।

सामने में मेमो कलाती भी रखा हुआ है।